ये तस्वीर एक बहोत बड़े --

चल रही है यहा पर एक कुर्सी भी--

कई पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

कुछ लोगों की हैं यहां पर मजदूर काम कर रहे हैं।

ये तस्वीर एक मकान की है।

यहाँ पर बहुत सारी कैमरे और लाइटें भी लगाई गई हैं।

सामानों के कट्टे भी रखे हुए हैं यहां एक पीला दरवाजा--

ये तस्वीर एक कमरे की है यहां पर--

और यहां पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं।

बिमला मिर्च खिरे भिंडी सारी सब्जियां रखी हुई है।

ये तस्वीर एक आदमी की है वो यहां मछलियां बेच--

यहां एक बोरड भी लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक कमरे की है इसमें--

यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी--

यह तस्वीर एक मकान की है।